कुछ महिलायें भी उन्हें प्रेक्टिस कराती हुई दिखाई दे रही है यह कमरा में कई सारी ऐनक लगाए गए हैं जिसमें सभी ऐनक बच्चे को देखते हुए --

काउंटर पे कई सारी कॉपी किताब और फूल की माइलाए जिसमें दो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं और वह भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कमरे में कई --

खड़ी हुई दिखाई दे रही है और इसमें कई सारी लाइटस और फुलझड़ी जलती हुई दिखाई दे रही है उनसे कुछ ही दूरी पे कई सारे लोग खरे होकर उन्हें देखते हुए --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

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक दुकान दिखाई दे रहे हैं। इस दुकान में कई सारे कपरे को काउंटर्स के ऊपर लगाया गया है जिसमें सभी --

इसमें सफ़ेद रंग के कुछ कार भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग पैदल भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरक के पास में एक बोर्ड है और उस बोर्ड पे --

यहाँ एक चित्र है और इस चित्र में कई सारे कारीगर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमे यह चित्र में --

एक छत की ढलाई हो रहा है। जिसमे कई सारे लोहे की रॉड लकडिया और मजदूर अपने हाथो से सीमेंट और कई सारे वस्तुओ को मिलाते हुए दिखाई --

कई सारे अंगूर के गुच्छे दिखाई दे रहे है इसमें यह अंगूर काले रंग के अंगूर है और इसके आस-पास भी कई सारे कैरट रखे गए है।

काउंटर पे जिसमे तेल के बोतल पारले जी बिस्किट के पैकेट नमकीन भुजिया और भी कई तरह के --

और यहां वृक्ष पतला और लम्बा दिखाई दे रहा है। आस पास में भी कई सारे पेड़ दिखाई दे --